मैं को ये एक कैंटीन के तस्वीर दिख रही है जहां पे बहोत लोग टेबल पे ऐसे ही बैठे--

उधर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस बस लगे हुए।

फुटबॉल के नेट भी लगे वहां पे और बास्केटबॉल का भी नेट लगा हुआ है।

ये मे को एक मस्जिद की तस्वीर दिख रही है मस्जिद बहोत बड़ी है।

जिसमें उन्हें अपनी वेबसाइट भीं दी हैं डब्लू_डब्लू_डब्लू डॉट स्वामी नारायण--

और इनका हिंदी में लिखा हुआ है प्रणाम।

जिसमें मेरे को एक होर्डिंग भी दिख रहा है उधर में एक हवा भरने के लिए जगह भी दिख रही है।

ये मेक ये मेको एक मेट्रो स्टेशन दिख रहा है और वो मेट्रो स्टेशन रानीप का है।

और इसके आगे फ्रिज भी लगे हुए हैं इसमें बहोत सारे तेल के डब्बे दिख रहे हैं अलग-अलग प्रकार के बिसलेरी के बोटले दिख रही है मेको।

यहां में कोई एक तो छोटा सा स्टेशन दिख रहा है जिसपे बैठने के लिए एक दो तीन चार बाकड़े दिए हुए है।

यहां मेको एक मज्जिद की तस्वीर दिख रही है मज्जिद के अंदर मेको कुछ दिख नहीं रहा है दो कुएं--

उधर में कोई गाड़ी भी दिख रही है बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इधर--

इस दुकान का नाम ब्लू पेट करके है बहोत से अलग अलग से इन लोगों ने बॉक्स बनाए रखे हैं मछली को रखने के लिए।

यह हमको एक मुस्लिम एरिया दिख रहा है इसमें बहोत से मच्छी बेचने के लिए स्टॉल लगे हुए हैं।

यह मेरे को एक घी काटा का माएस्ट्रो से स्टेशन दिख रहा है।

उसके आगे एक मर्सिडीज़ गाड़ी भी खड़ी हुई होगी ये--

उसके ठीक बाजु में एक दो रिक्शा जा रही है।

एक भैंस भी दिख रही है मेको और एक बाइक वाला दिख रहा है जो बैग और हेलमेट पेहन के जा रहा है।

एक अंकल मेरे को चलते दिख रहे दो बड़े बड़े बोर्ड मारे हुए--